आटो खड़ा हुआ है रिक्शा खड़ा हुआ है एक लाल कलर की कार खड़ी हुई है कट के नीचे रूम बना हुआ है।

कुछ आदमी खड़े हुए है इकट्ठे बैठे हुए है बैनर लगा हुआ है एक पीले कलर का बाइक खड़ी हैं सामने --

यहाँ एक हॉल में कुर्सियाँ रखी हुई हैं कांच की केबिन बनी हुई है।

एक बिल्‌डिग दिख रही है। कुछ बैनर लगे हुए हैं। ऊपर कुछ डिश टीवी की छतरी टंगी हुई है।

अन अंदर एक कुर्सी डली हुई है। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें ऑटो छपे हुए हैं। उजाला ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है।

ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं बाल वॉलीबॉल पीछे की तरफ बिल्डिंग दिख रही है।